और एक यहां पर बड़ी ट्यूबलाइट लगाई हुई है। मेज पर लेपटॉप रखा हुआ है।

और गोविंद राम मेघवार नाम लिखा हुआ है और इसके अंदर कट्टे रखे हुए हैं और एक साइड में ऊन रखी हुई है।

इस तालाब में काफी पानी भरा हुआ है और एक यहां पर पुल बनाया हुआ है और उधर एक टावर --

खड़ी हुई है और उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है कुछ व्यक्ति यहां बाहर की ओर खड़े हुए हैं।

और यहां तीन चार गाड़ियां खड़ी हुई है और एक यहां पर बड़ा कूलर लगा हुआ है।

और इसके अंदर एक मशीन रखा हुआ है और इसके जो दीवारें है वो हरे कलर की है।

और इसके रैंकों में काफी पुस्तके एवं कुछ खेल का समान रखा हुआ है।

खड़े हैं कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं एक बाहर की ओर--

और सामने एक काउंटर बना हुआ है जिस पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और दीवारों पर --

और इसके फर्श में कोटा स्टोन लगाया हुआ है।